दुकान की है इस दुकान के अंदर--

और किंडर जॉय दिखाई दे रहे हैं।

एक फ्रिज के अंदर इनको रखा गया है ये बहोत सारी टेस्टी चॉकलेट हैं।

ये दीवार पर हथौड़े से खुदाई कर रहे हैं।

यहां लोहे का सामान रखा हुआ है।

और छत पर लैटर डाला जा रहा है।

दो काले रंग के घोड़े नजर आ रहे हैं जिस पर लोग सवारी करते दिखाई दे रहे हैं।

ये तस्वीर एक सुंदर से रेस्टोरेंट की है।

ये तस्वीर एक टेंपू की है।

इसके टायर काले रंग के हैं।